अच्छी अच्छी बिल्डिंग मुझे दिखाई दे रही है के मतलब वो चार फ्लैट ऊपर दिखाई है पर अच्छी बिल्डिंग लग रही है ऐसी बिल्डिंग मे हम कभी गए भी नहीं है भाई फोटो मे देख रहे है।

अब वहाँ पर कुछ नाव भी दिखाई दे रही है बड़ी नाव दिखाई दे रही है वहाँ पर कोई आदमी भी दिखाई दे रहे है कोई भी दिखाई दे रही है कोई पेड़-पौधे भी यहाँ पर दिखाई देगा अच्छी तरीके से कुछ म मकान भी दिख रहा --

बहुत लम्बी दूरी दिखाई दे रही है बही स्टोर भी दिखाई दे रहे है स्टोर बहुत सारे स्टोर खुले है वहाँ पर कुछ बाल्टियां भी दिखाई दे रही है कुछ मुस्लमान भी दिखाई दे रहे वो टोपी भी लगाये हुए है वाइट कपड़े पजामा भी पहने है।

और कुछ इमेज भी दिख रहे कुछ ए_सी भी दिख रहे कुछ पंखे भी लगे हुए दिख रहे हैं बहोत सारी लाइट भी लगी हुई है बहोत सारा कांच भी मुझे बोहत सारा दिख रहा किताब कुछ --

यहाँ बड़ा सा हॉल सा दिख रहा है बहोत बड़ी बिल्डिंग दिख रही है जैसे कोई अमीर आदमी की बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पर बहोत सारे पंखे भी दिख रहे है पंखे दिख रहे है वहाँ पर कुछ ट्यूबलाइटे भी दिख रहे है वो बहोत चमक रही है।